आना- जाना कर रहे है और लाईट भी जली हुई है पहाड़ ऊंचे- ऊंचे नजर आ रहे --

उनकी जाँच कर रहा है तरफ आजू -बाजू काफ़ी मशीने रखी हुई है जाँच की

उन पर काफी सारे बर्तनों को जमाया गया है कांच के बर्तनों को--

और कुछ व्यक्ति वहाँ खड़े हुए है आस -पास पेड़ लगे हुए हैं ।

यहाँ हमें थोड़ी सुखी -सी ज़मीन नजर आ रही है व कुछ हिस्से में थोड़ी हरियाली नजर आ रही हैं ।

जो बहुत सुन्दर नजर आ रही है उनके आसपास काफी सारे पेड़ लगे हुए है काफी सुन्दर--